जो रोये जो लोग आस पास हैं और उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस डाली हुईं हैं जिन्होंने धोती डाली हुईं हैं।

अह और जिसमें उनके दो अ कु अं जो डॉगी है कुत्ते है उनके शैम्पू मे शैम्पू है और अह पेडिग्री है।

और ऊपर काफी अह लाइटस लगी हुई है बल्ब लगे हुए हैं एक बॉल है जिसपे--

इनमें पिक्चर है जिसमें एक लड़का जिम लगा रहा है शोल्डर लगा रहा है।

और ये इसमें काफी सारे बॉक्सेस भरे हुए हैं जिनमें जींस रखे हुई है कोट रखी हुई है कोट के कवर रखे हुए हैं।

ये एक फ्लोर हैं जिस पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं पार्क हैं।